और सुरमई रंग के पर्दे लगे हैं।

इसके आलावा एक दुकान की छत पे खराब टायर और एक तिरंगा झंडा भी फहरा रहा हैं।

एक बच्चे ने नारंगी और हरे रंग के पेपर से एक कलाकृति बनाई है जो की बहोत सुंदर लग रही है उसके हाथ मे केंची --

कुछ मोटरसाइकल खड़ी है और एक झाड़ू भी रखा गया है और कुछ पेड़-पौधे है ।

और उनके सामने तीन लड़कियां प्रस्तुति दे रही है।

इस तस्वीर में किसी प्रकार के अनाज संग्रहालय का दृश्य दिखाया गया है।

जहां पे दो चम्मच भी है। एक चम्मच कॉफी के अंदर है और एक चम्मच जो है ट्रे में रखा गया है।

और इसके आलावा कुत्ता लेटा हुआ है और इमारत का जो कमरे का रंग है वो सफेद है।

जिसमें एक अध्यापिका जो है वो बच्चों के बीच घूम रहीं हैं और सारे बच्चे जो हैं वो बैठ के पढ़ाई कर रहें हैं।

वहां पे लाल और सफेद गुब्बारो से सजावट भी की गई है और एक भूरे रंग का काउंटर भी मौजूद है।

जहाँ पे एक तरफ बहुत सारी ईटें एक कतार में रखी गई हैं और बड़े-बड़े पेड़ मौजूद हैं वहाँ पे और कुछ ईटें जो हैं ऐसे ही पड़ी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक दूध की डेयरी के बाहर का दृश्य दिखाया गया है जिसपे अनमोल लिखा गया है।

इस तस्वीर में एक व्यायाम शाला के अंदर का दृश्य दिखाया गया है वहां पे व्यायाम करने के लिए बहोत सारे उपकरण रखे भी गए हैं।

और दूर एक ट्रक भी खड़ा है उसके आगे एक घर बना हुआ है बाकि का सारा मैदान खाली है कोई घास नहीं लगी कुछ भी नही है।

इस तस्वीर में बैंक ऑफ़ बड़ौदा का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक पहाड़ी नुमा खेती का दृश्य दिखाया गया है जहा ऊंचाई से तस्वीर ली गई हैऔर निचे कुछ आकृतिया बनी हैं।